यहां पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है देखने में ऐसा लग रहा है यह किसी लैब का पिक्चर है यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है जिस पर पोस्टर लगा हुआ है लैब का |

यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है लग रहा है कि यहाँ पर ड्राई क्लीनर का काम होता है ।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहे है देखने में तो कोई स्कूल जैसा ही लग रहा है यहाँ पर बिल्डिंग का कलर --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

यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि रात का समय है चारो तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है लग रहा है कि यह कोई बुक स्टोर है यहाँ पर दो-तीन आदमी भी दिखाई दे रहे है ।

एक ने ऑरेंज कलर का टी-शर्ट पहना है एक ने बैगनी टाइप में पहना है एक व्हाइट कलर के पहने हैं ।